इसमें बहुत गहरा पानी है बहुत अच्छा लग रहा है पानी देखकर बहुत ज्यादा ही पानी लग रहा है इससे ऊपर मे बहुत मस्त हरा भरा घास है।

और उसके नीचे पानी भी दिख रहा है जो बहुत अच्छा ही दिख रहा है।

एक बहुत अच्छा ईमारत है जो बहुत सुंदर दिख रहा हैं जिसके नीचे बहूत से पेड़ -पौधा दिख रहे हैं गाड़ी भी दिख रहा है जो बहुत सुंदर हैं।